और इसके बाहर कुछ बाइक्स खड़ी हुई है पास में एक शॉप है आइसक्रीम वगैरा मिलती है।

प्रणाम यह मेला बहुत ही बड़ा है यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं।

यह एक बेडरूम है और इसमें डबल बेड लगे हुए हैं और खिड़कियां भी लगी हैं खिड़कियां पर चद्दरें लगे हुए हैं।

और इसके पीछे मंदिर है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है पेड़ भी लगे हुए हैं बहुत सारे।

बड़ा है यहां पर खूब सारी गाड़ियां खड़ी रख सकते हैं।

एक पिंक कलर एक येलो कलर की ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है ये स्कूटी बहोत अच्छी होती है यह चलने में आसान होती है।

और यहां पर बाहर एक बाइक भी खड़ी हुई है वाइट --

और यहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।

पुलिस चौकी में गाड़ी खड़ी है और यहां पर बोर्ड लगा है पुलिस थाना नाम से --

यह एक शोरूम है एयरटेल कंपनी का शोरूम जो बीकानेर में स्थित है।

बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े मिलते हैं और यहां पर कुछ कपड़े बाहर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।